यहां पर एक दुकान है इस दुकान पर जलेबी मिलती है।

बहुत सारी मिठाइयां मिलती है टी_वी भी लगा हुआ है दुकान के अंदर बड़े से लड्डू रखे हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारा समान दिख रहा है।

इस पारक में सभी लोग मनोरंजन के लिए आते रहते है।

यहां एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

पीछे बड़ी बड़ी हरी भरी झाड़ियां है।

यहां पर मुझे एक बिस्तर दिख रहा है जो नया लग रहा है।

यहां पर मुझे खुला मैदान दिख रहा है।

वेह मछलियो की सेलिंग कराता है।

यहां पर एक ए_टी_एम है और उस ए_टी_एम में एक आदमी खड़ा है वह पैसे निकाल रहा है।

तीन लगाई गई हैं बड़ी बड़ी दीवार है।

यहां पर एक शादी का फंक्शन है।

यहां पर एक शादी का फंक्शन है।

यहां पर एक ऐ_सी का मशीन रखा है।

यहां पर एक बहोत बड़ा होटल है।

इस होटल की बहोत सारी खिड़कियां है।

आस पास बहोत सारी घास है और खुला आसमान है।

उसमें से पानी आ रहा है।

और खेल रहा है वह हरे भरे गार्डन में खेलता है।